स्विमिंग पुल जैसा दिखाई दे रहा है जो फुवारा मार रहा है रात का समय है और वह नीचे घास भी है और लाइट सब की व्यवस्था की गयी है उसके पीछे में एक घर भी है।

केला के पत्ते भी लगे हुए हैं और बहुत लोग खड़े हुए और उसका दर्शन कर रहें हैं और फुल सबको चढ़ा भी रहें है।

यह एक गार्डन जैसे दिखाई दे रहा है।

और उसके अन्दर में बहोत सारे गुब्बारे को बिछाऐ हुए जैसे अच्छे से डेकोरेट किए है एक महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही है और एक व्यक्ती फ़ोन कर रहा है जैसे दिख रहा है।

यह एक लोन की दुकान लग रही है जो एक्सप्रेस गोल्ड लोन लिखाया हुआ है।

जो कि बहुत सारे कुर्सी सबको रखे हुए हैं और बीच में बहुत बड़ा पर्दा सबको रखा गया है उस पर्दे के आगे पीछे सभी साइड लाइट की अच्छे से व्यवस्था की गई है और सब तरफ कुछ सिस्टम है।

उस साइड दो व्यक्ति खड़े हुए हैं एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और एक साइड एक व्यक्ति और खड़ा हुआ है उसके ऊपर में कुछ डेकोरेट किया गया है।

यह एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखाया हुआ है और जिसके सब तरफ नीला कलर में रंग को पोते हुए दिखाई दे रहे हैं और खिड़की दरवाजा सब खुला हुआ है और एक साइट --

और उस एक ऑटो में एक व्यक्ति उससे कुछ पूछ रहा है और एक व्यक्ती खड़ा हुआ है उसके पीछे में कुछ बिल्डिंग भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पे दो जानवर वाले डॉक्टर है जो कि इस जानवर का इलाज कर रहे है उसके नीचे में इंजेक्शन सब--